और हरे कलर का पूरा मैट बिछा हुआ है काफी सुंदर लग--

यह स्कूल है और स्कूल में काफी बच्चे बैठे है और यहाँ पे जो है अ एग्ज़ैम लिया जा रहा है।

यह स्कूल है और स्कूल में काफी बच्चे बैठे है और यहाँ पे जो है अम्म एक्साम लिया जा रहा है।

और सीढ़ी वगेरा काफी अच्छा लग रहा है मॉल काफी बड़ा लग रहा है।

कुछ दुरी पे अम ब्रिज है काफी बड़ा ब्रिज है आई थिंक --

समुद्र भी है पहाड़ी भी है पूरा बादल टाइप का पूरा यहाँ का मौसम बना हुआ है।

और रेड में पेंट हुआ है शटर जो है अ लिखा हुआ है जो हैंड रायटिंग ओ काला कलर का है।

काफी अच्छा लग रहा है और स्काई ब्लू और कई कलर में आसमान भी दिख रहा--

यह स्टेज है स्टेज पे ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ है ब्लैक कलर का नीचे भी बिछा हुआ है।

और काफी अच्छी सीढ़ियां भी है सीढ़ियों बहुत चौड़ाई और लंबाई में है।

और पूरे ग्रे ग्रे कलर की यह जो मंदिर है मंदिर पूरे ग्रे कलर का है।

हॉल बना हुआ है और टू थाउसंड टवेंटी लिखा है।

अ राउंड राउंड में बनाया गया है यह और बिल्डिंग भी काफी अच्छी है नई है लग रही है बिल्डिंग --

और का आ काफी नाइट टाइम लग रहा है ये काफी पब्लिक भी दिख रही है साइकिल है।

कई कलर में है हरे नीले और ग्रे कलर में और पेड़ वगैरह भी काफी है।

अंडा और टॉफ़ी वगेरा थम्स अप का बोटल और --

एक लोग झुके हुए है एक लोग खड़े है दो और एक दो लोग झुके हुए है सॉरी और एक लोक खड़े हुए है और काफी बड़ी एरिया है यहाँ की--

पीछे की दिवार पर भगत सिंह की फोटो टंगी हुई नज़र आ रही है।

और काफी यहाँ पे लोग भी खड़े है काफी जेन्स खड़े हुए है।

यह पंचायत जिला पंचायत यह जिला पंचायत का यह कार्यालय --

और बगल में भी अ मकान है यह कार्यालय किसी चीज का है ये पता नहीं है लेकिन बगल में भी मकान है।

काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे--

यह मंदिर है मंदिर बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया गया है मनाने का जो तरीका है बहुत ही सुंदर है।

और अ गोडाउन के बाहर बहोत ही बड़ा स्पेस है बहोत ही अच्छा लग रहा है।

और अ गोडाउन के बाहर बहोत ही बड़ा स्पेस है बहोत ही अच्छा लग रहा है।

और एक जेन्स खड़ा होकर हवा उस पे भर रहा है टायर में और एक जेन्स बैठा है।

अ सैलून भी काफी अच्छा अच्छी तरिके से डेकोरेट किया गया है।

और काफी छोना छोटा ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा गेट है जो भी है मीडियम है अच्छा है।

और काफी पेड़ है और ग्रे कलर का यहाँ का वातावरण पूरा हुआ है।

कुछ लॉक लॉकअप वगैरा है ई थिंक है।

कुछ लॉक लॉकअप वगैरह आई थिंक है।

और बहोत ही बड़ी बैकग्राउंड है यहाँ की--

एग्जाम अ दे रहै है अपना और एक सर और दो टीचर खड़े हुए है।

बाहर बहुत ही अच्छे अच्छा गार्डन है।

बहोत ही बड़ा समुद्र समुद्र में नाव है और दो जेन्स खड़े हुए है एक साथ में और ब्लैक कलर व्हाईट कलर में--

और सामने जस्ट बिसलेरी का बॉटल काफी रखा हुआ है भर भर के --

और सामने जस्ट बिसलरी का बॉटल काफी रखा हुआ है भर-भर के--

--ल के पीछे पेड़ है बड़े-बड़े ओर बादल भी दिख रहा है काफी अच्छा दिख रहा है बादल--